इधर पेट्रोल टैंक है इधर रात का समय है बल्ब भी लगे हुए हैं और गाड़िया भी खड़ी हुई हैं और आदमी भी खड़ा हुआ है|

प-पटलियाँ हैं इधर पटलियाँ हैं इधर ट-ट्रेन है. वो रुकी हुई है उस टाइल्स लगे हैं गिट्टियाँ भी डली हुई हैं बादल भी हैं आदमी भी खड़े --

इधर पेट्रोल टैंक है इधर आदमी भी खड़े हुए स्कूटी भी खड़ी हुई है सुबह का समय है इधर पत्थर भी हैं रो-रोड भी है टाइल्स के लगे हुए हैं।

एक औरत खड़ी है गार्डन के वो कुछ पन्नी-वन्नी ले रही है इस नदी है पहाड़ घास है पेड़ है इधर कुछ लगा --

इधर नदी है सफेद लाल कलर कुछ लगे हैं इधर कार है पेड़ हैं घास है पेड़ लगे हैं।

पहाड़ पेड़ एक लड़का नहा रहा है पेड़ हैं पत्थर हैं सफेद कलर के पेड़ लगे हैं पत्थर नदी में।

इस्टेशन भी है ट्रेन भी है बादल भी है आ रही है ट्रेन ।